ये एक रेलवे स्टेशन की फोटो है।

यहां पे एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक डबल बेड पलंद है।

रेलवे प्लेटफार्म से उतरते हुए तो कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बंदा यहां पे हार बना रहा है यहां पे अलग-अलग फूलों के बने हुए छोटे-बड़े हार भी लटके हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक कमरा जैसा दिख रहा हैं।